इस फोटो में एक मगरमच्छ लेटा हुआ दिख रहा है।

बिल्डिंग के आगे चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

पानी में कचरा भी दिख रहा है।

एक नीले रंग की टंकी रखी हुई है।

और बहुत सारी घास भी लगी हुई हैं।

इस फोटो में बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही हैं।

फोटो में एक स्टेशन बना हुआ है।

इस फोटो मे एक शॉप दिखाई दे रही है।

काउंटर के अंदर कुछ सामान है।

दीवार पर सीनरी लगी हुई है।

इस फोटो में बड़ी सी मार्केट दिख रही है।

और बहुत सारे लड़के और आदमी भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टेशनरी की शॉप बनी हुई है।

गैराज के अंदर बहोत सारा सामान है।

रोड के किनारे एक लड़की खड़ी हुई है।

उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है।

टेंपल के नीचे दोनों साइड सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया हिंदी और इंग्लिश में लिखा है।

जमीन पर टेल जमीन पर कारपेट भी लगी हुई है।

रूम में टेबल चेयर भी दिख रहा है।

दीवार पर एक सीढ़ी जैसा दिख रहा है जमीन पर गमले भी रखे हैं एक ब्लैक कलर का बोर्ड भी है।

कोपी डायरी वगैरा भी है।

ए_सी और पंखे भी लगे हैं।

शॉप के बाहर बाइक स्कूटी खड़ी हैं।

और जमीन पर धूप भी दिख रही है।

ऑफिस के अन्दर बहोत सारे कॉलम बने हुए है।

उसके ऊपर चार साड़ियां और रखी हैं जो अलग अलग रंग की हैं।

और अलग अलग काउंटर भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक केक दिखाई दे रहा हैं।

जो ब्राउन कलर का है और पूरा चॉकलेटी बना हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम दिख रहा है।

चेयर के ऊपर प्लेट और स्पून भी रखा है।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

अंदर बहोत सारी कार भी खड़ी हैं।